पहाड़ बनाया गया है और यहाँ पे दो लोग खड़े है एक लड़की और एक लड़का। है ।

बगल में भी कुछ - कुछ सब्जिया रोपी गई हैं जहा पे अदमी जो की ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ हैं।

यहाँ पे हम देख रहे है की एक रूम जैसा बनाया हुआ है और यहाँ पे दो तीन लोग भी खड़े है दो लेडीज़ और दो जेन्स एक सामने में --

एक आदमी खड़ा है जो की ग्रीन कलर की ड्रेस में है टेबल चेयर लगाया गया है और पर्दा भी लगाया गया है घडी--